--लटक रही है बंद करने के लिए और चालू करने के लिए यहाँ पर कांच की खिड़की लगी हुई है एक बोर्ड भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर एक कुर्सी के पास एक टेबल भी है।

ये दुकान है यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लाई से बने हुए कुछ खंडवा वाले जमीन जिनमे बड़ी-बड़ी फुटबॉल रखे हुए है और कुछ कपड़े भी यहाँ पर जमे हुए--

यह एक कपड़ों को दुकान है यहाँ पर आप देख रहे है काफी सारे कपड़े टंगे हुए है दुकान मे और एक स्टूल पर एक लड़की बैठी हुई--

दो हुए हैं एक खिड़की विधि गयी है एक लाइट के लिए बोर्ड भी है यहाँ पर ये बलब भी दिखाई पड़ रहा है।

ये एक मंदिर है आप देख रहे है यहाँ पर काफी बड़ा मंदिर है जहाँ पर काफी सारी सीढ़ियां गयी हुई है और बीच में कुछ लोहे की पट्टियां लगी हुई है।

यहाँ पर आप देख रहे है एक पक्षी बैठ हुआ है जहां पर काफी सारा पानी भरा हुआ है छोटे छोटे हरे हरे पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए--

यह एक जिम है जहां पर आप देख रहे है काफी सारे मशीने यहाँ पर रखी हुई है बड़ी बड़ी मशीने यहाँ पर रखी हुई है।

यहाँ पर आप देख रहे है दूर खूब बड़े बड़े पहाड़ बने हुए है बिजली के खंभे दिख रहे है छोटे छोटे पेड़ पौधे झड़िया भी नजर आ रही है।

ये एक पोस्टर भी लगा हुआ है सामने काफी जगह पड़ी हुई है नारियल के पेड़े लगे हुए है।

और आप देख रहे है एक बिल्डिंग है जहां पर घर बिल्डिंग के सामने काफी सारी लकड़ियों को बांधा गया है।

यहाँ पर कुछ टेबल रखी हुई है जहां पर लोग बैठ सके और बोहत सारी लाइट भी लगी हुई है।

यहाँ पर कन्ट्रैक्शन का काम चल रहा है बिल्डिंग बन रही है और लोहे की पिलर यहाँ पर खड़ी हुई हैं दो यहाँ आदमी यहाँ पर बात कर रहे है।